भगवान बुद्ध की तस्वीरे हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं कोई कुछ बोल रहा है सुन रहे हैं सब लोग।

ये फिटनेस क्लब है जिसका नाम है ए डी फिटनेस क्लब । यहाँ पे --

खूबसुरत में जैसे ऐसा महसूस में जैसे नदी और आसमान एक साथ मिल रहे हो।

सीन है जहाँ पे ढेर सारे लोग --

ये रोड साइड एरिया है सूर्यास्त का समय यहां पे ढेर साड़ी --

हमारे भारत में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता बहुत ज्यादा लोग इस नृत्य को पसंद करते --

की तरह यूज़ करते हैं।